तार के बीच में एक तस्वीर है।

एक स्कूल है जो सफ़ेद रंग के रंग से रंगा गया है।

जो काफी बड़ा है। यहाँ पर काफी बड़े-बड़े डंबल्स लगे हुए हैं जो कुछ काले कलर के हैं और पीले कलर के हैं।

सामने में एक बहोत लंबा घर जैसा बना हुआ है। उसकी दीवारे केसरिया रंग से रंगी गई हैं। पास में एक नीम का पेड है।

यह सफ़ेद कलर का है। ऊपर की पट्टी लाल कलर की है। सामने में चार खिड़कियाँ शीशे की लगी हैं।

जो काला कलर का कुर्ती पहनी है। इधर एक आदमी खड़ा है। जो पैन्ट्स पहन रखा है। टोपी भी लगा रखी है।

टी शर्ट पहन रखा है। हाफ पैंट भी पहन रखी है।

जैसे कि आम के अमरुद के वगेरा।

ऑफिस में बड़े-बड़े पंखे भी लगे हुए हैं। लाइटे भी लगी हुई हैं।

बाकी सब ब्रदर नज़र आ रहा है।

ये एक बाउंड्री है। बॉउंड्री पर एक गेट बड़ा-सा बना हुआ है।

ये एक पहाड़ी इलाका लग रहा है। यहाँ पर काफी बड़े-बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बड़े-बड़े पेड़ भी नज़र आ रहे हैं।

एक आदमी ने काला कलर का टी-शर्ट और काला कलर का पेण्ट पहन रखा है।